सी प्रोग्राम के पहले स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक सामान्य सी प्रोग्राम कैसे लिखें
इसे कंपाइल कैसे करें
इसे निष्पादित कैसे करें
हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधानों को भी समझायेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकार्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 और उबुंटू पर जीसीसी कम्पाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और एडिटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए
विम और गेडिट कुछ एडिटर हैं
मैं इस ट्यूटोरियल में गेडिट का उपयोग करूँगा
इस प्रकार के अन्य ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
जो नीचे दर्शायी गई है
मैं आपको बताता हूँ कि एक उदाहरण के माध्यम से सी प्रोग्राम कैसे लिखें
अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबा कर टर्मिनल विंडो खोलें
अब टेक्स्ट एडिटर खोलें
अतः प्रॉम्प्ट पर टाइप करें
गेडिट स्पेस तल्क डॉट सी स्पेस एएमपी सिग्न हम प्रॉम्प्ट को मुक्त करने के लिए एम्परसैंड एएमपी का उपयोग करते हैं
कृपया ध्यान दें कि सभी सी फ़ाइल्स में एक्सटेंशन डॉट सी होगा
अब एंटर दबाएँ
टेक्स्ट एडिटर खुल गया है
अब प्रोग्राम लिखना शुरू करें
टाइप करें डबल स्लैश स्पेस माय फर्स्ट सी प्रोग्राम
यहाँ लाइन को कमेंट करने के लिए डबल स्लैश का इस्तेमाल किया गया है
कमेंट्स का उपयोग प्रोग्राम के प्रवाह को समझने के लिए किया जाता है
यह प्रलेखन के लिए उपयोगी है
यह हमें प्रोग्राम के बारे में जानकारी देता है
टीडबल स्लैश डबल स्लैस को सिंगल लाइन कमेंट भी कहा जाता है
अब एंटर दबाएँ
टाइप करें हाश include स्पेस ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट हमेशा ब्रैकेट को पहले पूर्ण करना और फिर इसके अंदर लिखना शुरू करना एक अच्छा अभ्यास है
अब ब्रैकेट के भीतरटाइप करें स्टडियो डॉट
ह stdioह एक हेडर फ़ाइल है
जब कोई प्रोग्राम स्टैंडर्ड इनपुटआउटपुट फ़ंक्शन्स का उपयोग करता है तो इसमें यह हेडर फ़ाइल अवश्य होनी चाहिए
अब एंटर दबाएँ
टाइप करें इंट स्पेस मैन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट मैन एक विशेष फंक्शन फंक्शन है
यह व्यक्त करता है कि प्रोग्राम का एक्जीक्यूशन इस लाइन से शुरू होता है
ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैके को पैरेंथेसिस कहा जाता है
मैन के बाद पैरेंथेसिस उपयोगकर्ता को यह बताता है कि मैन एक फंक्शन है
यहाँ इंट मैन फंक्शन कोई आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट नहीं लेता
यह टाइप इंटीजर की वेल्यू देता है
हम अन्य ट्यूटोरियल में दाता typesडेटा के प्रकार के बारे में सीखेंगे
अब मैन फंक्शन के बारे में अधिक जानने के लिए स्लाइड पर जाते हैं
अगली स्लाइड पर जाएँ
प्रत्येक प्रोग्राम में एक मैन फंक्शन होना चाहिए
एक से अधिक मैन फंक्शन नहीं होने चाहिए
अन्यथा कम्पाइलर प्रोग्राम की शुरुआत का पता नहीं लगा पाएगा
पेरेंथीसेस ब्रैकेट्स की खाली जोड़ी यह प्रदर्शित करती है कि मैन में कोई आर्गुमेंट्स नहीं है
आर्गुमेंट्स की अवधारणा पर आने वाले ट्यूटोरियल्स में विस्तार से चर्चा करेंगे
अब अपने प्रोग्राम पर वापस जाएँ
एंटर दबाएँ
ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट टाइप करें
ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट मैन फंक्शन की शुरुआत को प्रदर्शित करता है
फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट टाइप करें
क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मैन फंक्शन की समाप्ति को प्रदर्शित करता है
अब ब्रैकेट्स के अन्दरएंटर दो बार दबाएँ
कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाएं
इंडेंटेशन कोड को पढ़ना के लिए आसान बनाता है
यह शीघ्रता से एरर्स का पता लगाने में भी मदद करता है
अतः यहाँ तीन स्पेस दें
और टाइप करें प्रिंटफ ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंटफ आउटपुट को टर्मिनल पर प्रिंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सी फंक्शन है
यहाँ ब्रैकेट्स के अन्दर डबल उद्धरण चिह्न के अंतर्गत प्रिंटफ स्टेटमेंट में डबल क्वोट्स के भीतर कुछ भी टर्मिनल पर प्रिंट हो जाएगा
टाइप करें तल्क टो आ टीचर बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन n नई लाइन को प्रदर्शित करता है
परिणामस्वरूप प्रिंटफ फंक्शन के एक्जीक्यूशन के बाद कर्सर नई लाइन पर चला जाता है
प्रत्येक सी स्टेटमेंट को एक सेमीकोलों से समाप्त होना चाहिए
इसलिए इसे इस लाइन के अंत में टाइप करें
सेमीकोलों एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में कार्य करता है
अब एंटर दबाएँ और यहाँ तीन स्पेस दें
और टाइप करें रिटर्न स्पेस 0 और सेमीकोलों यह स्टेटमेंट इंटीजर जीरो देता है
इस फंक्शन के उत्तर में एक इंटीजर प्राप्त होना चाहिए क्योंकि फंक्शन प्रकार इंट है
रिटर्न स्टेटमेंट एक्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स की समाप्ति को प्रदर्शित करता है
हम अन्य ट्यूटोरियल में रिटर्न हुए वेल्यू के बारे में और अधिक सीखेंगे
अब फाइल को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें
फाइल्स को लगातार सेव करते रहना एक अच्छी आदत है
यह आपको अचानक होने वाले पॉवर कट से बचाएगा
यदि एप्लिकेशन्स क्रैश होता हैतो यह उपयोगी होगा
अब प्रोग्राम को कंपाइल करें टर्मिनल पर वापस जाएँ
टाइप करें जीसीसी स्पेस talkसी स्पेस हाइफेन o स्पेस मायआउटपुट जीसीसी एक कम्पाइलर है
talkसी हमारा फाइलनेम है
o मायआउटपुट से पता चलता है कि एक्जीक्यूटेबल फाइल मायआउटपुट में जाना चाहिए
अब एंटर दबाएँ
हम देखते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल हो गया है
एलएस -lrt टाइप करके हम देख सकते हैं कि मायआउटपुट बनाई जाने वाली अंतिम फाइल है
प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए टाइप करें डॉट स्लैश myoutput और एंटर दबाएँ
यहाँ आउटपुट तल्क टो आ टीचर के रूप में प्रदर्शित होता है
जैसा मैंने पहले कहा रिटर्न निष्पादित किया जाने वाला अंतिम स्टेटमेंट है
इस प्रकार रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी निष्पादित नहीं किया जाएगा
अब इसका प्रयास करें
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट शामिल करें
स्पेस दें टाइप करें प्रिंटफ ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट
ब्रैकेट के अंदर डबल क्वोट्स में टाइप करें वेलकम बैकस्लैश एन और अंत में एक सेमीकोलों टाइप करें
अब सेव पर क्लिक करें
अब कंपाइल और निष्पादित करें अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
आप यूपी अरो की का उपयोग करके पूर्व में प्रविष्ट किये गए कमांड्स को दोहरा सकते हैं
यही मैंने भी अभी किया
हम देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट वेलकम निष्पादित नहीं होता है
अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर वेलकम स्टेटमेंट लिखें
सेव पर क्लिक करें
कंपाइल और निष्पादित करें
हम देखते हैं कि दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट वेलकम भी निष्पादित किया गया है
अब उन सामान्य एरर्स को देखते हैं जो हमारे समक्ष आ सकती हैं
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
मान लें यहाँ मैं stdioह में डॉट भूल जाता हूँ सेव पर क्लिक करें
कंपाइल और निष्पादित करें
हम देखते हैं कि हमारी talkसी फाइल में लाइन संख्या 2 में एक फतल एरर है
कम्पाइलर स्टडियोह नाम वाली हेडर फाइल का पता नहीं लगा सकता इसलिए यह एक एरर प्रदर्शित कर रहा है नो सुच फाइल ओर डायरेक्ट्री
और कम्पाइलेशन समाप्त हो जाता है
अब एरर को फिक्स करें प्रोग्राम पर वापस आएँ डॉट को पुनः प्रविष्ट करें और सेव पर क्लिक करें
कंपाइल और निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
मैं आपको एक अन्य सामान्य एरर दिखाऊंगा
प्रोग्राम पर वापस जाएँ
अब मान लें यहाँ मैं लाइन के अंत में सेमीकोलों को भूल जाता हूँ
सेव पर क्लिक करें
कंपाइल और निष्पादित करें
हम देखते हैं कि हमारी talkसी फाइल में लाइन संख्या 6 में एक एरर है
यह है एक्सपेक्टेड सेमीकोलों बेफोर प्रिंटफ
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेमीकोलों स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में कार्य करता है
अतः यह लाइन 5 के अंत में और लाइन 6 की शुरुआत में इसे खोजेगा
यह लाइन 6 है
यह अंतिम स्थान है जहाँ आप सेमीकोलों लगा सकते हैं
याद करें कि कम्पाइलर लाइन 6 पर भी एरर मैसेज देता है
देखते हैं कि क्या होता है यदि हम यहाँ सेमीकोलों लगाते हैं
सेव पर क्लिक करें
कंपाइल और निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
यहाँ इस लाइन के अंत में सेमीकोलों टाइप करें
चूँकि लाइन के अंत में सेमीकोलों टाइप करना एक निर्धारित प्रक्रिया है
अब सेव पर क्लिक करें
कंपाइल और निष्पादित करें हाँ यह कार्य कर रहा है
अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ
एक नियत कार्य के रूप में वेलकम टो थे वर्ल्ड ओएफ सी प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
देखें क्या होता है यदि प्रिंटफ स्टेटमेंट में n शामिल नहीं है
यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट at स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित हैआईआईटी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद